यहां एक बाथरूम एसेसरी की शॉप दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

छोटे छोटे पोट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

बिजली की तारे दिख रही हैं।

एक का लाल है एक का पीला है और एक का नीला है और दीवार भी दिख रही है।

और यहां पर लाइट्स दिख रही हैं।

यहां पर आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं घर भी दिख रहे हैं और--